यहां पर बच्चे अपनी ड्राइंग बनाते हुए नजर आ रहे हैं।

इसके बाहर कई सारी गाड़ियाँ भी नजर आ रही है।

उसके बगल में कुछ पेड़ लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहोत सारे पेड़ और पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में हमें एक कुर्सी और एक स्टूल पड़ी हुई देखने को मिल रही है।